यह देखने में काफी सुन्दर --

यह बहुत बड़ा पर्वत है इसके चारो ओर पत्थल ही पत्थल नज़ल या रहे हैं इसके किनारे बहुत हरे-भरे --

मालबल लगा हुआ है।